इस इमेज में मुझे सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिसपे लिखा है रोहन चाय सेंटर चाय कॉफी ।

और इस इमेज में दो जेंस खड़े हुए हैं और कुछ सामान दिख रहा है मुझे इसमे और साइड में एक व्हाइट कलर का सट्टर है और आगे एक बाल्टी दिखाई दे रही है।

जो अ आगे की तरफ जा जा रहे है नाव से और उनके साथ में कुछ नाव में समान नजर आ रहा है मुझे।

इसमें साइड में मुझे काफी सारे बैग दिख रहें हैं जिसमें भी कुछ अलग-अलग सामान नज़र आ रहा है मुझे --

यहाँ और ग्राउन के अंदर ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है मुझे कुछ और यहाँ पे व्हाइट व्हाइट सी लाइन दिख रही है कुछ यहाँ पे सामने कुछ सा लगा हुआ है।

जो की बहुत सारा रखा हुआ है इसमें मुझे कुछ व्हाइट कलर का दिख रहा है पिंक कलर रेड कलर येल्लो कलर बहुत सारे कलर नजर आ रहे है मुझे----

कुछ बड़े पेड़ भी है कुछ छोटे पेड़ है और मुझे सामने कुछ एक खम्बा जैसा दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर ग्राउंड है ये।

इस इमेज में काफी बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ सजावट का काम हो रहा है।